इ स्कूल हवे स्कूल की लगे बनावल बा उसकूल में जब पोरगराम होला | जेंगा लइका लईकी लोगन छोटे छोटे पोरगराम करेलन नाचे गाये ला लोग पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी के |